सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है भारतीय रेल --

ये ग्राउंड है । यहाँ पे सब दौड़ने आते हैं। घुमने आते हैं वॉकिंग करने की--

चाय दुकान है टेम्पू खड़ी हुई है टेम्पू में सामान लोड किया जा रहा है

यहाँ पे पढाई लिखाई के साथ भी किया जाता हैं बहुत अच्छा है एकदम बहुत सुंन्दर लग्जरियस बना हैं जिससे लोग आकर्षित हो इसके तरफ हम लोग तो नही हो --

पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया तभी तो पी.एम. मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में निकलेगा।

यहाँ पे गर्ल्स गल्स पारलर है यहा गल गरस्ल लो गर्ल लोग आ जाओ यहाँ पे अगर तुम बदसूरत हो यहाँ से हूर की परी बनके निकलोगी ।

यहां यहां इ विश्वविद्यालय है इस विश्व-विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय यहां पे आके पढ़ाई-लिखाई सब चीज होता है।

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का ए.टी.एम. है। एस.बी.आई. का ए.टी.एम. हैं यहाँ पे।

सालो साल आसमान का रंग नीचे धरती ऊपर आसमान घर को कृप्या मरम्मत करवाए और जल्द से जल्द करवाए नहीं तो घर गी --